सिंपली तो गाइस इस फोटो में हमारे को दिखाई दे रहा है चार गेट दिखाई दे रहे हैं मतलब ये पूरा होटल की तरह है टेबलें --

कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं पीछे बड़े पेड़ हैं।

और इस फोटो में मतलब ये फोटो में ए इंजीनियर है यह सड़कों का काम करते हैं मतलब सड़कों की लाइनें खींचते हैं।

इस फोटो में हमारे को होटल जैसा नजरिया दिखाई दे रहा है टेबल लगाई हुई है कुर्सियां लगाई हुई है खाना वाना खाने वाली होटलें है ये --

वे इस रूह के नेवला है धन्यवाद लगे।

और कुछ मोटर दिखाई दे रही है और चित्र वगैरह पंखे वगैरह दिखाई दे रहे हैं कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें दिखाई दे रही है।

और आगे एक घर दिखाई दे रहा है साइड में गार्डन दिखाई दे रहा है नॉर्मल पौधे वगैरा --

छोटी-छोटी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है एक नाव दिखाई दे --

और लाइटिंग कलर का पीछे सीमेंट कलर का पेंट किया हुआ है।

और बाहर दो एक व्हाइट और एक ब्लैक रंग की गाड़ी खड़ी हुई है दो साइड में लेडीज दिखाई दे रही है।

और कांच के गेट लगे हुए है बाहर दो कार्टून खडे हुए है के कपड़े पहने हुए है।